यह एक ओपन एरिया हैं जहां पर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक पार्क का सीन है।

रेस्टोरेंट एंबियंस का बहोत अच्छा है।

और भी बहोत अच्छी अच्छी चीजे मिलती है।

यह एक ओपन एरिया है जहां पर कुछ पानी जमा हुआ है।

चित्रकारी काफी अच्छी की गई हैं।